खंभा दिखाई दे रहा है जिसमें तिरंगा का रंग दिखाई दे रहा है जिसमें--

यह किसी बैंक का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और भी बहुत सारे अनेक पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

दो कारे दिखाई दे रही है एवं अनेक लोग दिखाई दे रहे हैं।

ए_सी कूलर दिखाई दे रही है तीन कुर्सी एक टेबल दिखाई दे रही है।

यह किसी डेयरी दुकान की दृश्य दिखाई दे रही है।

बहुत सारी चेयर टेबल दिखाई दे रहे हैं।

अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे एक जल स्थान दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे लोहे के सामान रखे हुए हैं।